यहाँ पर एक हॉल दिख रहा है एक लड़का बैठा है जो हरे रंग की कैप लगाया हुआ है एक सफेद रंग की टी-शर्ट पहना हुआ है जिसपे --

यहाँ पर आसमान है जो वो अँधेरे की वजह से नीला हो गया है और दो लाइट लगी हुई है जो सफ़ेद रंग की चमक रही --

ये एक गार्डन है जहाँ पर पक्का रास्ता बना हुआ है स्लॆटी रंग का हैं ।

अ सामने एक स्विमिंग पूल दिख रहा है अ जिसके पानी का रंग नीला है और ज्यादा गहरा नहीं है ये --

काउंटर रखे हुए है जिसपे लड़के बैठ के काम कर रहे है यहाँ पर काली चेयर रखी हुई है यहाँ के दीवारे --

और बच्चे नीले रंग की कुर्सी पे बैठे हुए है जिनके आगे कागज हैं ।

कुछ भूरे रंग की दिख रही है यहाँ पर रोड पे एक बाइक चल रही है जिसपे दो लोग बैठे हुए है एक आदमी पैदल है जिसके हाथ में एक झिल्ली हैं।